यह एक मछली की दुकान दिखाई दे रही है। जहां पर बोहोत तरीके की मछलियां दिख रही है।

जिसका टायर निकला हुआ है।

जिसके ऊपर से चढ़कर एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।